फव्वारा चलाया गया है जहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं औरतें खड़ी हुई है एक आदमी है जो फुव्वारा जला रहा है पास में से एक लोडिंग गाड़ी जा रही है।

ये किसी इवेंट की फोटो है जहां पर बहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं यहां पे एक शेर की मूर्ति बनी हुई है कोई --

एक बड़ासा पेड़ लगा हुआ है कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं बाहर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है बाइक --

ये जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीर है यहां पर बहोत सारे भक्त खड़े हुए है कुछ आदमी है कुछ औरतें हैं।

कुछ आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं कुछ आदमी खड़े हुए हैं कुछ आदमी साइड की रो में खड़े होके दर्शन कर रहे हैं कुछ आदमी हाथ जोड़ के खड़े हैं।

एक टेबल रखी हुई है आसमानी कलर की उसके पास में एक ऊपर एक बुके रखा हुआ है जिसमें व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर है।

बहुत सारी औरतें हैं कुछ आदमी औरत आपस में बातचीत कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक औरत की गोदी में हैं।

कुछ बाइक है जो पैट्रोल भरवा रही है।

कैंपर रखे हुए हैं वॉटर कैंपर उसके अलावा बोर्ड लगे हुए हैं साइन बोर्ड जिस पे लिखा है फोर्टी परसेंट ऑफ --

दो नीचे डस्टबिन रखे हुए हैं एक पिलो रखा हुआ है ए_सी लगा हुआ है दो बगल में टेबीले रखी हुई है लाइटे जली हुई है।

ये सामुदायिक केंद्र का सेक्टर है इसके बाहर की दीवारें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं कलर उतरा हुआ है बाहर एक --

नमक की बोटल मिर्ची की बोटल रखी हुई है कुछ लैंप टंगे हुए हैं एक व एक वाट लगी हुई है।

ये शादी के गार्डन की बाहर की तस्वीर जहां पर बहोत सारी फ्लावर की डेकोरेशन करी हुई है।